इस तस्वीर के अंदर बहुत सारी टेबल कुर्सियां पड़ी है।

इस तस्वीर में ग्राउंड के ऊपर बहुत हरियाली हैं यहां गोल गोल सर्कल बने हुएं हैं।

लाइट वाले खंभे लगे हुएं हैं बीच में कुछ के ऊपर कुछ मंदिर बने हुएं हैं पत्थर पड़े हैं।

बेडशीट बीछी हुई हुए हैं एक कमरे में सामने ए_सी लगी हुई है पर्दा लगा हुआ है सफेद कलर का नीचे टाइलें बिछी हुईं हैं।

इधर मालाएं लगी हैं बाहर पानी वाला कैन पड़ा है।

दीवार के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है बाहर भी शायद एक पौधा है अंदर बहुत सारे पौधे लगे हैं।